यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की गुलाबी रंग की हैं जिसकी खिड़किया दिखाई दे रही हैं।

चटाईया बिछी हुई है जिस पे कुछ महिला एक्सरसाइज करती हुई--

गुलाबी रंग का है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक कैन दिखाई दे रही है जो की स्टील की बनी हुई है उसके बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने गुलाबी रंग की--